कार को ऊपर ला के उसे पे पानी मारा जा रहा है।

यहां पे कुछ पेस्ट भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे आस पास में ढेर सारी चीजे बनीं हुईं नज़र--

रूम जो ब्राउन कलर के हैं।

रूम का कलर ब्लू ऊपर में व्हाइट दिखाई दे रहा है इसको साइड में एक और कुछ घर दिखाई दे--

यहां पे ढेर सारी बाहर में गाड़ियां दिखाई दे रही हैं कुछ बाइक और स्कूटी लगी हुई।

यहां पे रैंक में कुछ शीशे लगाए हुए नजर आ रहे हैं।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

गेट भी बना हुआ नजर आ रहा है बाहर में कुछ कुरकुरे कुछ ओयस कुछ लेज ।

नीचे में दो लोग दिखाई दे रहे हैं जो पानी में खड़े हैं।

सामने में ग्लास दिखाई दे रहे हैं।

यह पर एक येलो कलर की ऑटो दिखाई दे रही है।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

उसके ऊपर में ढेर सारी चीज और भी रखी हुई नजर आ रही है कुछ कार्टून भी दिखाई दे रहे हैं।

के पास में बाउंड्री मारी हुई नजर आ रही है।

यहां पे कुछ ग्लास के चीज भी बने हुए नजर आ रहे हैं ऊपर में कुछ लाइटें दिखाई दे रही है।

एक आदमी बैठ के इसको पढ़ते हुए नजर आ रहा है।

कुछ पेपर्स भी रखे हुए हैं साइड में।

पास ही में एक शटर दिखाई दे रहा है जो खुला है।

सारी चीजे रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

तो कुछ दाग लगे हुए नजर आ रहे है।

नीचे में ढेर सारी क्रीम रखी हुई नजर आ रही है।

कुछ दिल को गढ़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है किसी के चलते यहां पे एक फूल भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में कमल श्रृंगार एवं गिफ्ट पैलेस दिखाई दे रहा है।

लाईट जलती हुई दिखाई दे रही है।

कुछ बाल रंगने वाले सामान भी दिखाई दे रहे हैं।

ढेर सारे रैक बने हुए हैं।

यहां पे एक गेट दिखाई दे रहा है जो थोड़ा सा व्हाइट कलर का है।

बस लोहे के कुछ चीज दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है।

ट्रक के पास में एक छोटी सी स्कूटी भी लगाई है जो वाइट कलर की है।

थोड़े छोटे पौधे दिखाई दे रहे है और कुछ पानीया की बूंदे भी दिखाई दे रही है।

ऊपर में कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।